कुछ पत्थर रखे गए है जो भूरे और सफ़ेद रंग की है ऊपर के साइड पे छत है जो भूरे रंग का है।

बना हुआ है जो ये नीले रंग के चेनल गेट लगा हुआ है शटर लगी हुई है बाहर पे बोर्ड लगा बहार बगल में--

कार खड़ी है सफ़ेद रंग की पेड़ लगे हुए है जो हरे पत्तियाँ बगल में एक कार खड़ी है सफ़ेद रंग की और इस स्कॉर्पियो पर छत पे टंका रखा गया है बगल में दीवाल हल्के पीले रंग की है और सफ़ेद रंग की है और ऊपर के साइड से तार गया हुआ है।

इ सामने साइड पे पर्दे है सफेद रंग के अ इ पीले रंग की है बहुत सारे लोग खड़े जो खाकी वर्दी पहने हुए बगल मे बड़ा सा बिल्डिंग है जो पीले रंग का और सफेद रंग का बगल मे एक बोर्ड है नीले रंग की।

चारों तरफ पेड पौधे हैं जो हरी पत्तिया हैं बीच में एक झंडा गाड़ने के लिए बनाया गया है जो सीढ़ी बनी हुई है सफेद रंग की और कत्थे रंग की।

ये एक पर्दे हैं जो सफ़ेद और काले रंग की है सफ़ेद और नील रंग की आसमाने है।

यह जंगल है हरे रंग की पत्ती है पेड़-पौधे हैं भूरे रंग की।

अ डिवाइडर बना हुआ है सामने परदे लगे हुए हैं सफेद रंग के है और बड़ा-सा पेड़ है जो हरी पत्ती है।

और उम्म एक डेस्क बना हुआ है नीचे के साइड पे टाइल्स बिछी हुई है सफेद रंग की ऊपर छत है पीले रंग का और सफेद रंग की बगल में कुछ लोग बैठे हुए चप्पल उतरी हुई काले रंग के जूते --